एक जंगल में पानी का फुहारे है वहा पे छोटे-छोटे पौधे है।

वहां बड़ा-बड़ा पेड़े है।

और लगा हुआ लाइन के तार है | आसमान इ नीला कलर के दिख रहे --

काम करने वाले आदमी है बड़ा सा ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है बहुत सारे बाइके है वहां चारो तरफ हरा-भरा खेत --

एगो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनी हुई है वह योगा कर रही है।

आदमी है वहां बड़ा फील्ड है वहां आसमान बहुत सुन्दर दिखे ऑटो है ऑटो में आदमी बैठा हुआ --

वहाँ बहुत सारे प्रसाद रखा हुआ है वहाँ पे बहुत सारे लड़की बैठी हुई है।

और फिर शेर का घर है इस पे खाना रख --

खिड़कियाँ अंधेरो से कुर्सीया।

वहां पे पीछे आदमी ऐसे बैठे हुए है आगे सीढ़ी बनाया हुआ है लाइटे जल रहा है।

यहाँ पे सीसा लगा हुआ है लाइटे लगा हुआ है डिस लगा हुआ है ।

एक घर बन रहा है | उस पर इटा रखा हुआ है यानि मिस्त्री बना रहा है |

एक दीवाल पे बहुत सुन्दर डिजाइन बनाया हुआ है ।

हरा-भरा बड़ा-बड़ा सा पेड़े है बाहर से रोशनी --